साइड में बड़े बड़े दीवाल है सामने एक जाली का दरवाजा लगा हुआ है।

तथा सामने कांच की दीवाल है।

यह एक रूम का दृश्य है।

सामने एक छोटा सा बॉक्स भी है हरे रंग का--

सामने एक खिड़की भी है। दरवाजे पर बहोत सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं।

शेर है बाहर पिंजरे से वह बंद है तथा आस पास बहुत सारे हरी भरी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

तथा नीचे थोड़ी सी नीले रंग में कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं।

एक ने काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है तथा एक ने नीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

साथ ही सामने में विवेकानंद का फोटो भी लगा हुआ है।

यह किसी दुकान का दृश्य है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई है।

रंग बिरंगे रंगों के कपड़े लगे हुए हैं।

तथा यहां सामने एक बाइक भी खड़ी हुई है।

एक दादाजी बैठ कर मछली बेच रहे हैं।

ऊपर बहुत सारे लाइटें तथा पीले व सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।